आा यहाँ पर देखिए आपको एक दीवाल ब्लू कलर का पोस्टर दिखाई पड रा है एक स्कूटी दिखाई पड़ रही है।

ओर देखिए आस पास आपको छोटी छोटी खास दिखाई पड़ रही हे कुछ बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई देंगे सामने देखिए आपको एक लाल कलर का झंडा दिखाई पद रहा होगा फराते हुए।

ओर यहाँ पर देखिए कुछ अलमारी है अलमारी मे देखिए बहोत सारा समान रखा हुआ है कुछ बोरी भी रखी हुई है साथ - साथ मे कुछ गत्ते रखे हुए है सामने देखिए कुछ पर्फ्यूम सा कुछ क्रीम--

यहा पर देखिए आपको डम्बेल दिखाई पद रहा है ब्लैक कलर का।

यहाँ पर दिखे वाल कलर वाइट कलर दिखाई दो फैन ब्लैक कलर दिखाई पड़ रहा हैं यहाँ पर बहुत सारी ट्रॉफीज रखी हुई हैं।

इनकी कुछ सिरप की बोतलस और कुछ दवाइयाँ और कुछ कोटटोनस दिखाई पा रहे है और यहाँ पर देखिए आपको के डिब्बे दिखाई पड़ रहे है।

छोटी छोटी घास दिखाई पड़ रही पूरे व्हाइट कलर के ब्लू कलर के शीशे लगे हुए है और यहाँ पे देख एक टैग भी लगा हुआ है।

देखे तो ब्लू कलर की माटी बिछी हुई हैं ब्लू कलर उसके बाद ढक्कन भी दिया गया हैं।

यहा पर देखिए तीन बाइके दिखाई पड़ रही है और यहा पर देखिए आप को एक बाइ के पास अंकल दिखाई पड रहे है और यहा पर देखिए एक बीटे निकाये पड रहा है।